लोग अपने एक के उपर खड़े हुए हैं जो सबसे उपर लोग एक इन्सान खड़ा हैं उसके गले में एक ढोलक लटका हुआ हैं जो बजा रहा हैं ।

में आगे साइड में बहुत सारे सोफे रखे हैं एक बड़े साइज़ में और उनके पीछे चेयर्स रखी हुई हैं।

एक गाडी पे एक लड़का बैठा हुआ है और एक वहाँ पे साइड में पिलर | के पास खड़ा है।

एक लकड़ी की टेबल पे बहुत सारे बंडल रखे हुए --

एक बहुत बड़ा हॉल हैं जिसमे सेंटर में रेड कलर का कारपेट बिछा हुआ हैं और आगे साइड में बहुत सारे लोग खड़े हुए --

शॉप की साइड में एक पोस्टर

एक ग्राउंड में कुछ लडकियाँ क्रिकेट खेल रही हैं एक लड़की जो बैटिंग | कर रही हैं उसने ब्लैक कलर की टीशर्ट पहनी हैं और ब्लैक हेलमेट लगाया हैं।

एक बहुत बड़ा बोर्ड हैं ब्लू कलर का जिसमे बोहत सारा डेकोरेशन किया गया हैं अलग-अलग शेप के फ्लावर्स लगे हैं अलग-अलग कलर्स के फ्लावर्स हैं।

एक पहाड़ में एक गुफ़ा है जहाँ पे एक लेडी खड़ी हुई है जिसने येलो साड़ी पहनी है पहाड़ के ऊपर कुछ--

उसके सामने एक आदमी खड़ा हैं जिसने ब्लू कलर की शर्ट पहनी और हाथ में कुछ लिया हुआ हैं।

एक बहुत -बड़ा वाटर पार्क है उसके बीच में एक स्विमिंग पूल है स्विमिंग पूल में बहुत सारा पानी है और एक ब्लू कलर की स्लाइड हैं ।

उसमें बहुत बड़ी -बड़ी स्लाइड है एक येलो कलर की है और एक रेड कलर की हैं।